लाइट वगैर जल रहे हैं पंखा भी लगा हुआ है।

और नीचे का दरवाजा खिड़की वगैरा भी नजर आ रहे हैं।

रखी हुई है एक आदमी सामने खड़ा है आदमी की टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है।

डरा रही है लाइट वगैरा जल रही है।

फूलों की बेलों से सजाया हुआ है अंदर कुछ रखा भी है।

बिस्कुट और भी दूसरी कई चीजे नजर आ रही है बर्नी वगैरा भी रखी हुई है।

आठ हाथ है सामने एक औरत खड़ी है शेर भी खड़ा है।

देखिए यहां पर स्टेज बना हुआ हैं फूलों से सजा हुआ है लाइट वगैरा जल रही हैं।

देखिए इस रोड पर बहुत सारे आदमी और औरत--